एक दुकान है जहाँ पे लिखा है गोल्ड प्लस मतलब फेसिअल वेसीअल का सामान रखा हुआ है।

ओले जहाँ मम्म्म बोहत सारे ज़ीने लगे है नीचे और अंदर लोग बोहत सारे जमा हो रहे है अंद-कुछ लोग अंदर जा रहे है।

मतलब वो टांगने वाली क्राफ्ट बना रहे हैं जो अपनी क्लास में टांग सके इनकी मैम वाइट कलर का सूट पहनी हुई है।

ये फे फेड्रियल फेड्रियल बैंक का ए.टी.एम. है जिसके कांच के दरवाजे है।

और चील जैसी गुफा बनी हुई जिसके हम अंदर भी जा सकते है।